और गुड़ियाँ है। जैसे की गुड़ियाँ है और कई तरह के खिलौने भी डिब्बे में धरे हुए जो कि काफ़ी दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं। यह एक खिलौने का दुकान है।

ये एक पूजा करने वाला मंदिर है जोकि काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है और ये कई --

और ये कलकता का बस स्टैंड है।

ये एक बाइक का स्टोर है बनाने वाला।

यह बाइक का पुर्जा पुर्जा खोला गया है और यह बाइक का सर्विसिंग किया जा रहा है।

यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है जोकि सीढ़ियों पे खड़ा है।

होटल है होटल में कई तरह के टैटू बनाए हुए हैं।

श्री कृष्ण जी अपने हाथ में बांसुरी लिए हुएँ हैं।